यहां पर अंकल ने हरी रंग के कपड़े पहने हैं और ऊपर वाइट रंग का फैन और लाइट जल रही है।

ये एक किला है इसकी दीवार ईटों की बनी है।